खड़े हुए हैं दोनों ने सफ़ेद शर्ट पहनी है और नीचे पैंट पहनी है |

बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई है और कुछ पेशेंट --

पेड़ और पौधे और फूल दिखाई दे रहे हैं नज़ारा बहुत सुन्दर है।